इस दृश्य को देखकर आपको क्या लगता है ये दृश्य शायद श्रीनगर साइड का दृश्य है जो काफी अमेजिंग काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये दृश्य वाकई में बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे कप कॉफी ग्लास देखो कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये --

नृत्य के बारे में बताया गया है जो काफी अच्छा नृत्य दिखाई देता है बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाई दे रहा है जो कितना अमेजिंग कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आपको भी नृत्य करने का शायद मौका मिले कभी।

और इसके पीछे की साइड मे एक लोहे की सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ पर इसके पीछे खंभे और तार की लाइन जा रही है ऊपर यहां पे वो ये बहोत सुंदर है।